यहां पे आदमी लोग भी काफी हैं।

यह एक लोहार की दुकान है।

यह एक बरवाडीह स्टेशन है।

यहां बहोत अच्छा हरियाली जगह है।

यहां पे बहुत तरह तरह के दवाइयां रखी हुई हैं।

बहुत सारा फुल चितराया हुआ है।